यहाँ पे किसी चीज़ की सभा बिठाई गई है।

और कई गाड़िया भी यहाँ पे खड़ी हुई है।

इ यह एक स्कूल का कार्यकर्म है।

और यहाँ पे बच्चों को बच्चों को ट्रॉफी और मैडल देने के लिए रखे गए हुए हैं।

और खेत के आस-पास ही पहाड़ बने हुए हैं |

कुछ लोग भी यहाँ पर खड़े हुए हैं अपनी बस का इंतज़ार कर रहे हैं |

यहाँ आस-पास बहुत-सी गाड़ियां भी खड़ी हैं |

और फायर अलाराम भी यहाँ पर रखा गया है |

और उसके ऊपर प्लेटे रखी हुई है |

और एक गमला भी यहाँ पर रखा हुआ है |